जिसके अंदर बहुत सारे लोहे जैसा सामान भी है और किनारे में बहुत अच्छे से खिड़की दरवाजे को बनाए गए है और गोल-गोल दिखाई दे रहे है और चमकदार भी दिखाई दे रहा है बाकी के हिस्से का रंग बहुत ही मटमैला सा देख रहा है खिड़की थोड़े खुले है।

और उस टेबल के ऊपर में नाश्ता सब लगा हुआ है और पानी के बोतल भी है और चाय भी दिखाई दे रहे हैं तो कप उसके ऊपर में कुछ लिखा हुआ है बेस्ट को --

नीचे में दरवाजे सब भी है और नीचे में सीढ़ी सब भी दिखाई दे रही है कुछ दूर में स्कूल जैसा घर भी है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके नीचे में एक फौजी खड़ा हुआ है और खिड़की भी दिखाई दे रही है और बादल भी आसमान सभी बहुत अच्छे से दिखाई देते नज़र आ रही है और खिड़की में कुछ लगा हुआ है बहुत न अ जमीन नहीं दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बाइक खड़ी हुई है उसके पीछे में कुछ बिल्डिंग सी बनी हुई है और रहने के लिए भी जगह उसके पीछे में और बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और पाइप सब भी दिखाई दे रहैं हैं और ऊपर में रेलिंग भी लगी हुई है गमले सब दिखाई देते हुए नज़र आ रहैं हैं।

के कुछ दूर में स्कूल भी बने हुए हैं उसके किनारे में बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहें हैं ऊपर नीला आसमान भी दिखाई दे रहा है कुछ दूर मैं सफ़ेद रंग के दीवार भी दिखाई दे रहें हैं कुछ लोग नज़र नहीं आ रहें हैं छोटे-छोटे घास भी दिखाई देते हुवे प्रतिक हो रहें है।

यह एक स्कूल है जो की उसके आगे में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और कुछ बच्चियाँ नाचते हुए दिखाई दे रहीं हैं और हर एक के सिर में टोपी है ऐसा लग रहा की क्रिसमस-डे है उसके नीचे में कुछ बिछा हुआ है ।

यह एक दुकान है जो की उसके किनारे में बहोत सारे समान को रखे हुए है और कुर्सी सब को रखे हुए है और बीच में टेबल है और दो-ठो पानी के बोटल है और उसके किनारे में भी पानी के बोटल दिखाई दे रहे है।